तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

बैकग्राउंड में केले के गुच्छे और कुछ अन्य बोरियां दिखाई दे रही हैं।

उसने लाल रंग के बिना बाजू के हुडी और जींस पहनी है।

यह तस्वीर एक कपड़े के दुकान की है।

मैदान में कुछ लोग टहलते या खेलते हुए दिख रहे हैं।

इसका नाम दोपहरिया सर्विस सेंटर है।